एक बैंक दिखाई दे रहा है जो एस_बी_आई बैंक है।

से हार्ट शेप बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे टूल्स और मशीन्स दिखाई दे रही हैं।

जिसपे कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त ललितपुर दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बेरीगेट्स दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के है।